बस बहुत ही छोटी दिखाई पड़ रही है और पूल बहोत ही बड़ा बना हुआ--

मछलियां कुछ छोटी है कुछ मछलियां बहोत ही बड़ी हुई है।

यहां पे बहुत सारी लेडिजे बैठी हुई हैं।

यह एक कंपनी है कंपनी के अंदर बहुत सारे जेंस काम कर रहे हैं।

ये एक नदी है। नदी में बहुत सारे छोटे छोटे से घास उग वाई --

और पार्क के अंदर एक रोड भी गई हुई है।